और यहाँ पे एक झरना है जिसमे से पानी गिर रहा है बहोत तेज़ी से पानी गिर रहा है।

और साइड में कुछ मिक्की माउस बने है बलू --

यहाँ पर अ हिरन है बहुत सारे जो की लोहे की जाली से बंद है एक--

और वहाँ पे सा पास में कुछ पानी जादे भरा हुआ है और मिट्टी पड़ी हुई है और खड़ा हुआ है बच्चा पाइप पकड़ के --

जो की रेड कलर की फूल है और बहोत सारी फूल र--

टायर वगेरा पड़े हुए है बहोत सारे टायर पड़े हुए है यहाँ पर --

जो की अपना कुछ प्रोजेक्ट बना रहे है और कुछ यहाँ पर रोइंग शीट वगैरह ले के बैठे है पेपर शीट वगैरह--

और जो की चार-पाँच बच्चे है और कुछ लड़कियाँ है इसमें और वो अ नाव चला रही है बोट --